और नमक और भी बहोत सारी चीजें रखी हुई हैं और एक अंकल भी--

और एक फूल भी दिखाई दे रही है।

अं बिल एक हॉल दिखाया गया है जिसपे क्रीम और ब्राउन कलर कि पेंटिंग की हुई है।

कॉस्मेटिक की दुकान दिखाई गई है जिसमें क्रीम --

और एक हाफ कलर का जैकेट दिखाया गया है जो ब्लू और गोल्डन कलर में मिक्स है।

यहां सफेद और पीले कलर की है।